यहां पे बहुत सारे दर्शक मैच को देख रहे हैं।

यहां कुछ दो पहिया वाहन भी खड़े हुए हैं।

नीचे बहोत सारे आटे के बोड़े रखे हुए दिख रहे हैं।

यह दिन का समय व्यतीत हो रहा है।

बगल में एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है।

यह एक जलाशय का दृश्य दिखाई दे रहा है।

आमने चारों तरफ कांच लगाकर कमरा बनाया गया है यह दिन का समय व्यतीत हो रहा है।

यहां बड़े अक्षरों में वेद सिटी स्टाइल लिखा हुआ हैं।

पार्क के अंदर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

यह रात्रि का समय व्यतीत हो रहा है।

नीचे जमीन में टाइल्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।